यहाॅं पे कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

भी कुछ ट्रक दिखाई दे रहें हैं। यहाँ पे काले रंग का आसमान भी दिखाई दे रहा है। जमीन दिखाई ड़े रही।

फिर रोड दिखाई दे रहा है। कारे भी दिखाई दे रही हैं। यहां पे बाइक भी दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।